और यहां पे बहुत सारी गाड़ी वगैरह खड़ी है।

और पीछे काला काला दिखाई पड़ रहा है इन्होंने कान में झुमके पहने हुए हैं।

ये एक भारतीय स्टेट बैंक है और यहां पे दो तीन लोग बैठे हुए हैं।

नीचे फर्श पड़ी हुई है आसमान का रंग देखने में नीला दिखाई पड़ रहा है।

और यहां पे बहोत सारी मेहरुआ खड़ी हुई है।

ये एक स्विनिंग पूल है। स्विनिंग पूल में बहोत अच्छा सा पानी भरा हुआ है। ये देखने में बहोत बड़ा --

गुलाब जामुन रखे हुए और इसके पड़ोस में एक बिस्किट की दुकान है इसमें से बहुत सारे बिस्किट रखे हुए।

एक एल_जी कंपनी है यहां पे एल_जी और सैमसंग के चिजे मिल--

कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और यहां पे बहोत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुईं है।

और यहां पे बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं इन पन्नियों में काली काली मिट्टी भरी हुई है औ--